इस फोटो में घर का अंदर दिखाई दे रहा--

टाइल्स वाइट कलर जहाँ पे तीन ठो रखे है स्टील सिल्वर कलर का लोहा--

साइड में येलो कलर का फ्लैग का तरह दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये ऊपर से क्लिक करने वाला फोटो है।

सबसे लास्ट में घर लोग की तरफ बैठे सभी दिखाई दे रहे।

ब्लू कलर का प्लास्टिक बिछा के उसमे बैठा हुआ है।

लेफ्ट साइड में बैलून लाइन से लगा के है डेकोरेसन करके है बैलून रेड और वाइट कलर मिक्स है।

मर गया वाला है सुख पत्ता है।

नीचे साइड में नदी दिखाई दे रहे है थोड़ा सा ब्लू करके।

पीछे की साइड में वॉल व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

बाहर में पांच ठो इंसान दिखाई दे रहा है सबसे आगे वाला औरत है साल लगाके है पर्पल कलर का।

लाइट जला के है दो ठो।

यहां पे दो एक इंसान कस्टमर है और एक जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है कुछ लिख रहा है।

वहां पे पीछे साइड में बिल्डिंग दिखाई दे रही इनकंप्लीट वाला जो बना के नहीं हुआ है।

दो ठो लड़की है अलग अलग तरह का।

कॉफी पीते हुए दिखाई दे रा है फेस को आधा ढक के है।

रूम पूरा व्हाइट कलर है ए_सी दिखाई दे रहे है।

बाहर में एक लड़का चलते हुए दिखाई दे रहा है हॉफ पैंट पहन के है।

राइट साइड में भी व्हाइट कलर का गाड़ी पार्क करके है।

इस फोटो में बिल्डिंग दिखाई दे रहे बंगला जहां पे एक बिल्डिंग में व्यंजन क्रेन रेड कलर का लुक बीच में लगा के--

पार्क बहोत सफा से दिखाई दे रहे--